यहाँ पर एक बहुत अच्छा है वजन हो रहा है वजन करने वाली मशीन है यह मशीन नहीं है ऊपर जा रही है सब माल--

यहाँ पर भी है पत्थल रखा गया है जो बड़े- बड़े पत्थर फोड़ रहे हैं भैया लोग बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है ऊपरे प्रतीक्षालय बहुत मस्त हैं।